इस इमेज मे मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी मे एक नावँ दिखाई दे रही है नावँ मे चार लड़कीया और एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा हैं। लड़कीयों के हाथ मे लकड़ी और आदमी के हाथ मे भी लकड़ी दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस इमेज मे मुझे एक दुकान दिख रही नहीं एक बोर्ड दिख रहा है। उसमे लिखा है सी_बी ए_टी_एम ।

इस इमेज मे मुझे एक बस दिखाई दे रही है बस के ऊपर से तार दिखाई दे रहे है।

और पत्थर उ ऊपर की और नदी की ऊपर की और पत्थर डले हुए दिखाई दे रहे है। उसपे एक अंकल बैठे हुए दिखाई दे रहे है।